पेड़ दिख रहे हैं ऊपर के झाड़ी जोक जो की हरी-भरी दिख रही है जो भी सुंदर और प्यारी दिख रही है पीछे खाली मैदान दिख रही है चिड़ियाघर में उसको बंद कर हुआ है यह चिता दिखता है जो की बहुत ही अच्छा बहुत सुंदर हमकोलग रहा है और प्यारा लग रहा है|

मुझे सुंदर गीलाव दिख रही है अल्युमिनियम का दिख रहा है स्टीलका नहीं दिख रहा जो की बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रहे हैं|